यह किसी घर का सीन है और यहां पर ऊपर की तरफ छत है और उस पर ग्रिल लगी हुई है चारों तरफ स्टील की और सामने पीछे इसके बराबर मंदिर है।

और जो उसका घर है और उसमे हरे रंग का पेंट हो रखा है काले रंग का गेट है और एक दरवाजा है जो ब्राउन कलर का है.

ये खेत यह खेत है और सामने की तरफ एक में तो खुदाई हो रखी है और दूसरा जो है उसमें घास है और ये सामने को रोड रोड है और इधर--

यहां पे टायरों की दुकान है और यहां पे बहुत बड़े बड़े टायर हैं छोटे छोटे मोटे टायर हैं और ऊपर की तरफ एक रे रेलिंग जा रही है मतलब सीढ़ी जा रही है।

यहाँ पर एक रोड है और ये क्रेन क्रैन है जो बहत बारे पाइप है उसको उठके ले जा रही है और सामने की तरफ --

यहाँ पे काम हो रहा है यहाँ पे पुल बन रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर पुल बन रहा है और यहाँ पे बहोत बड़े बड़े एंगल रखे है और बस खड़ी है यहाँ पर।

यह घर का सीन है और यहां के इसके सामने एक स्विमिंग पूल बना हुआ है और इधर की तरफ बहुत पटला सा पड़ा हुआ है बहुत बड़ा और साइड से।

और एक गेट घर के बहार खड़ी हुई है गेट पे और इसमें इसके दरवाज़े भी बंद हैं।

ये है एक ऑफिस है भोकस वागेन का और यहाँ पे ये भटिंडा में है और यहाँ पे एक डब्लू का साइन बना हुआ है।

और यहाँ पि का भी साइन बना हुआ है और यहाँ पे कारे है एक वाइट कलर की दो वाइट कलर की खड़ी है एक ब्लैक कलर की खड़ी है और यहाँ पर ग्रील भी लगी हुई है।

और सामने की तरफ एक टंकी भी है बहोत छोटी सी टंकी दिखाई दे रही है जब कि वो बहोत बड़ी है।

और एक खंबा लगा हुआ है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अँगल है जिसपे बहुत बड़ा बनर् लगाया जाता है।

और यहाँ पर एक बिल्डिंग भी है छोटी बिल्डिंग है ये और यहाँ पर ग्रे कलर से पेन्ट हो--

इधर मंदिर है नहीं यहां पे अ यहां पे दुर्गाजी की मन मूर्ति है और एक और मूर्ति है।

दो मूर्ति है यहा पर और यहा पर औरत जो है इनकी पूजा कर रही है बहोत अछि सजाई हुई है पीछे की तरफ ग्रील लगी हुई है और यहा बहोत भीड़ है।

यह एक अं शीशे पे शीशे मे रखा हुआ अं कुछ सामान है शायद पत्थर का शोपीस का सामान है।

और इसमे मूर्ति भी है और कुछ लिखा हुआ है साइड से और इसमे ताले लगे है दो और ये --

नीचे पूरा का पूरा लकड़ी का है और इसके पीछे जो है ब्लू कलर का अ कपड़ा लगा हुआ--

और कुछ लोग हैं जो अंदर से बाहर आ रहे हैं बाहर से अंदर जा रहे हैं और यहां तीन जने हैं जो बैठे हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं कुर्सी पे और चाय पी रहे--

पंजाबी सीन है यहाँ पो स साइन है और यहाँ पे सामने की तरफ का कार और बाइक खड़ी हुई है।

उपर एक बोहोत बड़ा अम्म घर सा बना हुआ है जो चारो तरफ से अ सिसो से बना हुआ है और यहा पे शटर भी लगे दूकान टाइप की है ये--

ये कोई जगा है यहा पर पंजाबियों पंजाबी में कूछ लिखा है यहा भागडा पर मत्लभ इनके भाग्ड़ो का सीन पिक्चरे बनी हुई है एक--

राष्टगान का भी बना हुआ है ये स्कूल है और यहा पे बहोत सारे लोगो के पोस्टर बने हुए है लिखा हुआ है कुछ और सामने की तरफ एक गेट है जो बाहर को खुल रहा है।

यहाँ पर तारो के रोल पड़े हुए है नीले तार का रखा है काले तार का रखा है और यहाँ पे अ सी_आर_आई --

पंप के भी बहुत बड़े बड़े पाइप्स रखे हुए हैं और ऊपर की तरफ एक खिड़की लगी है अंदर के यहां पर बहुत सारा सामान भी है और ऊपर जाने के लिए जीना भी है।

यहाँ पे बहोत सुंदर डेकोरेशन हो रखी है और यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और साइड में क्यारियां लगी हुई है और एक गेट बना हुआ है और गेट बंद भी है।

यह कोई घर का सीन है और यहां पर उम एक स्टेचू बना हुआ है ऊपर की तरफ और वो समझ में नहीं आ रहा ठीक है और यहां पर--

और यहां पर लाइटें भी लगी हुई हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और सामने की तरफ टंकी है और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

सुंदर सफाई हो रखी है और पेड़ पौधे लगे है घास भी कटी हुई है यहाँ पर।

और पेड़ों पे व्हाइट कलर का पेन्ट लगा हुआ है और यहाँ पर लाल कलर की दिवरे लगी हुई--

दोनों ही चीजे है और यहाँ पे बहत सारे स्टैचुल बने हुए है और यहाँ पे बहत सारे कपड़े भी टंगे हुए है और कुछ लोग है अंदर खरीद रहे है।

ये है एक ऑफिस है और यहाँ पर एक मेज लगी हुई है कॉम्प ये बैंक का सीन है सायद यहाँ पर लैपटॉप है और बहत सारे फाइलें रख्ही हुई है।

यह बस अड्डा है यहां पर यह पूरा का पूरा यहां पर ट्रैफिक है यहां बस है और टेंपू हैं बहुत सारे और पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं बने हुए हैं।

यहाँ पर ब ये नर्सरी है और यहाँ पर बहत सरे पे गमले लगे हुए है कलरफुल है नील रंग के आसमानी लाल हरे --

यहाँ एक क्रेड रखी है एक टव रखा हुआ है सामने की तरफ एक टीन भी रखी है हरे रंग की शीट लगी हुई है।

यह किसी घर का सीन है और ये यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है और यहाँ पे सामने की तरफ एक दीवार है और उस पर डिजाईन बना हुआ है बल्ब लगा हुआ है।

और इधर की तरफ एक और जुला है जिसमे एक लड़का हु जुल रहा है खाली और यहा लाल रंग की बिल्डिंग बनी हुई है यह गेट भी लगा हुआ है और चारो तरफ पेड़ पोधे है बहोत सारे।

मेज पर और यहाँ खाने का सामान भी रखा हुआ है और इधर की तरफ बहुत सारी लाईटे लगी हुई--